यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्डिंग के चारों ओर बाउन्ड्री है और यहाँ पर बड़े- बड़े पोस्टर भी दिखाई दे रहे है और सामने की ओर बड़ा सा ग्राउंड डला हुआ हैं।

छोटा -सा घर दिख रहा है घर के अंदर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए है और यहाँ पर ऊपर की ओर छत पर खपड खपडे र डरे हुए हैं।

सामने की ओर बड़ा-सा मैदान दिख रहा है और यहाँ पे एक कार भी नज़र आ रही है जोकि रेड कलर की है और पीछे की ओर एक कार भी र रखी हुई हैं।

यहाँ पर एक बहोत बड़ी शॉप नज़र आ रही है शॉप में बहोत सारा सामान रखा हुआ है कुछ सामान ऎसा लग रहा है कि कपड़ों की दुकान हैं।

बहोत बड़ा ग्राउन्ड नज़र आ रहा है और यहाँ ग्राउन्ड में बहोत सारे व्यक्ति है जोकि खेल रहे है और यहाँ पर बड़ी -बड़ी सीढ़ियां लगी बनी हुई हैं।

यहाँ पर एक बड़ा-सा हाल दिख रहा है और यहाँ पे बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है और कुछ स्कूटीयां भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर दो शटर नज़र आ रही है जोकि शटर खुली हुई है और यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ नज़र आ रही है अंदर की ओर और यहाँ पर कुछ मोटर साइकिल रखी हुई है सामने की ओर।

एक बहोत बड़ा म मंदिर सा दिख रहा है और बहुत ही सुन्दर लग रहा है यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ी हुई है और बीचो बीच ला -लाल कलर की पट्टी बनी हुई है।

यहाँ बड़ा गोल्डन कलर का मंदिर दिख रहा है मंदिर की ऊपर की ओर बहोत बड़े- बड़े झंडे लगे हुए हैं और यहाँ पर सामने की ओर छोटी- सी नदी है नदी के--

ग्राउंड में एक बड़ी सी प्रतिमा रखी हुई है और ये प्रतिमा ब्लैक कलर की है और सामने ओर गुलदस्ता रखा हुआ है कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है और रोड के आजू- बाजू बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है। कुछ फूलों के--

और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेकोरेशन किया गया है गुब्बारो से और यहाँ पर ग्रीन कलर की नेट बिछी हुई है कुछ यहाँ पर रेड कलर की कुर्सियाँ भी रखी हुई है जिन पर समय नज़र आ रहा है ।